पेड़ भी नजर आ रहे है यहां पर किनारो पर कुछ कीचड़ भी जमा हुआ है जहां छोटे-छोटे दलदला जैसा लग रहा है।

कौ कत्थई कलर से पेंट किया गया है इसके पीछे की तरफ एक जिराफ की मूर्ति भी है पीछे की तरफ बहुत सारे पेड़-पौधे --

अ इसके साइड में ही तीन बड़े पोल है जिनका कलर रेड है। इस कार का कलर कथई है। इसपर एक नेम प्लेट चिपकी हुई है।

आती-जाती हैं यहाँ पर एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ है जिसके पास तीन कुत्ते खड़े हुए हैं इसके सामने की तरफ एक बड़ा सा ब्रिज भी दिखाई दे रहा है स्टेशन के --

ये एक फिश की शॉप है जहां पर बहुत सारे फिशेज और कॉकरोच आई मिंग केकरे रखे हुए है यहां पर।

बसे बी है बस के सामने एक तरफ एक साईकल बी खड़ी हुई हैं और एक वाइट कलर की --

और ये एक खाने की प्लेट है जिसमें एक कटोरी में दाल एक में पनीर की सब्जी और एक में चटनी रखी हुई है पास में ही --

यहाँ पे बहत सारे लोग है जो की अंदर के तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ है --

यहाँ पर एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है जिसमे एक चैनल गेट भी है गेट के तरफ एक पोस्टर लगा हुआ है इसके पीछे के तरफ पेड़ है --

दिखाई दे रही जिसके गेयर वाली साइकल रखी हुई बिल्डिंग के सामने कुछ प्लांट भी रखे हुए हैं। --

यहाँ पर सूरज उगते हुए दिखाई दे रहा है इसके सामने --

जहाँ पर लाइन से चेयरे लगी हुयी है जिसपर कुछ व्यक्ति बैठे हुए है तथा सामने के तरफ भी --

महिलाएं वर्क कर रही है अ पर जो बिच में एक दिवार है उसपे एक बड़ी सी घड़ी दिखायी दे रही है जिसमें --

ब्लड प्रेशर एंड शुगर सिविल और जो लेडीज महिलाएं है --

एक यूनियन बैंक है और इसके ऊपर के तरफ एक बिल्डिंग दिखाई दे री हे जिसमे दो-तीन खिड़किया भी दिख रही है --

जो की एक डेस्क पर रखी होगी पास में एक रेड एंड ब्लैक वायर भी दिखाई दे री --

यहाँ पे बाहत से लोग लाइन से खड़े हुए दिख रहे है जहा सामने के तरफ बिल्डिंग हे जिसपे लिखा है --

तो यह एक कोई फंक्शन हो रहा है यहाँ ग्रीन कलर की मैटे बिछी हुई है जहाँ पर कुछ लोग नीचे भी बैठे हुए हाँ तथा कुछ लोग खड़े हुए हैं ऊपर की तरफ --

और यहां पर सामने की तरफ एक ब्रिज दिख रही है जिसपर एक व्यक्ती बैठा हुआ है जो की लकड़ीयों को इकट्ठा कर रहा है। इसके पास एक बड़ा सा ड्रम भी रखा हुआ है।

टी-शॉर्ट और पैंट पहनी हुयी हे --

और यहाँ पर कुछ धोने का काम होंरा है यहाँ पे दो मजदुर है जिसने औले ऑरेंज कलर का टी-शर्ट पहनी हुई है और येलो हेलमेट --

यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो एक पेंटिंग बना रहा है जो एक पेंटिंग बना रहा हैं इस पेंटिंग में उसने ऑरेंज कलर की शर्ट और व्हाइट कलर की व्यक्ति को बनाए और बहुत सारे --

रंग-बिरंगी कलर्स रखे हुए हैं पीछे की तरफ एक पत्थर जैसे डिजाइन की दीवार भी है उसमें व्हाइट कलर की बनियान और ब्लू चड्डा पहना हुआ है।